एक स्टोर है यहाँ एक स्प्राइट की बॉटल रखी हुई है अंडे रखे हुए हैं क्रेट में चिप्स की टंगी हुई है।